एक सलून है सलून में एक लड़का दाड़ी बना रहा है।

जंगल टाइप का कुछ पेड़ है ।

अंदर में बगीचा टाइप से है।

वाइट कलर के चट बिछे हुए हैं उसी पे बच्चा लोग योगा कर रहा है।

बोड लगे हुए हैं शाम का समय है पीछे से लाइट --